आसमान पेड़ साइकिल एक आदमी बैठ के जूते का फीता लगा रहा है इलाहाबाद बैंक के सामने सिटी के नज़दीक और इलेक्ट्रिक का तार है ए सी है |

सादे आसमान मेला चियर टेबुल सोबुज मेट ल बहुत लोग --

नीला आसमान सादे बादल नदी बीच पेड़ और नदी का किनारा सुंदर-सुंदर जायेगा इधर --